झाड़ दिख रहा है और एक छोटी सी ऑफिस जैसी दिख रही है।

यह एक हॉस्पिटल जैसा नजर आ रहा है जहां पे तीन --

अम्म वायर लगे हुए हैं लाइट वाले और ए_सी लगी हुई है ग्रीन कलर का।

लकड़ियां दिख रही है तो लकड़ियां से टेबल बनाया गया है।

और नदी में एक बीच में कुछ बोट जैसा नजर आ रहा है।

और कबर्ड जैसा ग्रिल बनाया हुआ दिख रहा है।

यहां एक बिल बिल्डिंग दिख रही है और उसमें रेड कलर से कुछ लिखा गया है।

बिल्डिंग में पिंक कलर मारा गया है झाड़ दिख रहा है।

और रेड कर्स कलर से अपोलो लिखा गया है।

यह एक कार वॉशर की दुकान दिखई दे रही है कार दिख रही है सफेद कलर की।

हाईवे रोड इसका डिवाइडर येल्लो और ब्लैक कलर से कलर किया गया है।

यह एक जनक स्वीट मार्ट दिख रहा है।

दीवाल है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट मारा गया है।

और एक बलून दिख रहा है ऊपर आसमान वायर दिख रहे है।

ये बलून लगे हैं नीले कलर के और व्हाइट कलर के।

और दीवाल है दीवाल में भी टाइल्स लगी हुईं हैं।

एक बहुत बड़ा झरना दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है।

लंबा सा पेड़ दिख रहा है आजू बाजू ढेर सारे पौधे दिख रहे हैं।

यह शाम का टाइम हुआ है और --

और टेबल में रेड कलर का पर्दा है गुलाबी कलर का पर्दा है।

अम एक आद दो आदमी बैठे हैं और एक आदमी ने चश्मा लगाया--

कुछ आदमी सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कांच लगा हुआ है एक बुड्ढी औरत है।

सजाया गया है नीचे पीला कलर से मंडप सजाया गया है चेयर भी ब्ल्यू कलर की है।

इसमें बच्चे स्पीकिंग करते हुए स्पीकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लेडिस दिखाई दे रही है जो कुछ बच्चों को कर रही है।

और बाजू बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

उसमें लिखा है मार्टिनोज पिज़्ज़ा ।

मार्ट दिख रहा है और उसका बोर्ड हरा कलर से--